पीछे लाल रंग के बकेट रखे हुए हैं दीवार भी है।

और दूल्हा और दुल्हन खड़े हुए हैं उनके बाजू में लड़कियां हैं और यहां पे बहुत सारे लोग भी खड़े हैं अंधेरा छाया हुआ है।

और फर्श का रंग सफेद काला ऐसा है यहां पर एक आदमी जा रहा है जिसने सफेद नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

जो काले रंग की है उनको एक पतेले में रखा हुआ है इसके अंदर नौ मछलियां हैं।

एक पूल दिखाई दे रहा है पूल के ऊपर बहुत सारा पोस्टर लगाया हुआ है जो पीले रंग का है।

यहां पर एक काले रंग की रिक्शा है और उसके पीछे एक सफेद रंग की गाड़ी भी खड़ी है।

यहां पर एक अ बड़ा सा रूम है जहां पर बहोत सारे सामान बेच रहे हैं यहां पर--

यह मूर्ति एक सफेद रंग के टेबल के ऊपर रखी हुई है।